ठीक हैं अइसे जगह और फार वैसे फोटो उतना खास नहीं आया है बाकी ठीक है इसमें जैसा बोला जाये तो--

अंदर ही अंदर का लिया गया है ठीक है वैसे--

इ है से अपना जो भी है निकल जाता होगा।

घूमने घामने के लिए सब निकल जाते होंगे--

ये बच्चो के खेलने कूदने के लिए रखाया गया है झूला वूला रखाया है और वहाँ पर ऐसा लग रहा है ओ जो बतख वाला झूला लगा हुआ है।

खाली सुनसान रोड लगरा हुआ है और एक दो तीन--

और ठीक है वैसे सब काम धंधा के लिए करना पड़ता है सब चीज जो भी रहता है स्मेल का चीज भी रहै ।

बस थोड़ा सा इसमें व्यूज जो है छोटा कर दिया गया है फोटो में समझ में नहीं आ रहा हैं बाकि फोटो जो है।

जो बुक वगैरा बेच रहै होगे इसको प्लस पब्लिक तक पहुंचे --

इस फोटो में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के --

और घूमने घामने के लिए एरिया ठीक है टोटल इसमें --

ये बैंक ऑफ़ बड़ोदा ट्वेंटी फोर ऑवर ए. टी. एम. यहाँ पर--

ठीक है घूमना -घामना भी ज़रूरी है ऎसे --